नीचे में दो कुर्सी लगी हुई है जो लाल कलर की है।

उसके आगे एक बड़ा मैदान देखते हुए नजर आ रही है।

जिस पर लिखा हुआ है रुद्रा प्रॉपर्टीज उसके नीचे आरोग्यम पैथलैब लिखा हुआ है।

वहां एक बोट लगा हुआ है चनपटिया लिखा हुआ है।

दवाई का दुकान देखने को मिल रहा है उसमें दो--

वहां छोटे छोटे घास है।

बिल्डिंग उजला कलर से पेंट किया गया है।